इस चित्र में हमें एक किराने की दुकान दिखाई गई है।

इस चित्र में हमें एक डाक्टरी की दुकान दिखाई गयी है जिसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके उपर सबनुर हेल्थ केयर सेंटर लिखा हुआ है।

इस लैपटॉप के अंदर हरा रंग दिख रहा है दूसरे के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है।

और यह जोड़ बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बना रखा है।

सूरज लग रहा बहोत सारा आसमान भी साफ दिख रहा--

यहां पर दो आदमी मेज के पीछे बैठे हुए हैं और कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

इस चित्र में हमें एक बैड दिखाया गया है जो दिखने में बहुत कंफोर्टेबल लग रहा है।

इसके एक के ऊपर एक आदमी ने झंडा लहरा रखा है और दूसरे में बॉडी बिल्डर खड़ा हुआ है अंदर जिम में एक आदमी खड़ा हुआ है।

यहां पर कुछ शीशे से डिजाइन बनाया गया है कुछ अलमारियां रखी हुई है जिसके अंदर छोटा मोटा काम का चीज है जी--

और एक थो प्लेट लगाई गई है जिसके अंदर दो लोटे है।